सड़क है इस पर ऑटो एक ऑटो दो ऑटो जा रहा है दो बच्चे बैठे हैं लोग --

तेल भरवाते है गाड़ी में और कोई गाड़ी नहीं लगा है जिसमें खाली दो जेंट्स है आरो --

उतना खास नहीं अच्छा नहीं लग रहा है गाड़ी अच्छा लग रहा है सो --